दुकान जहाँ तरह-तरह की चीज़े रखी हुई है डेटॉल है साबुन है मैगी का पाकेट है चाय का पाकट है।

एक घर है और बहुत सुंदर लग रहा है ये देख कर।

एक आदर्श ज्ञान कोचिंग सेंटर है जो कि सिकंदरा में पड़ता है। एक करियर विश कोचिंग है जो कि इंग्लिश ग्रामर की कोचिंग है। यहां पर कुछ बेंच लगे हुए है। एक बाइक है। इस कोचिंग के बगल में एक टावर लगा हुआ है। इस कोचिंग के आगे बस खड़ा हुआ है।